इसमें आई भी नजर आ रहा हैं इस--

गाड़ियां चल रही है एक ग्रेनिट फार्म ढा नजर आ रहा है और बाहर एक पेड़ भी है।

और का सेल में साड़ी लगी हुई है इसमें हमें साड़ियां टि शर्ट --

जो काफी एडवेंचरस है ये बहोत ही एडवेंचरस टाइप का आदमी है जिसको एडवेंचर करना पसंद है।

जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं।

पेड़ कटा हुआ है हरियाली भी है।

जो कि ग्राहकों को सेवा देते हैं इसमें एयर कंडीशनर लगा है एक फैन लगा है।

जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सक--

लेकिन इसमें हमें शॉप कीपर नजर नहीं आ रहा है लगता है वो चाय पीने गए होंगे।

ये इनका एक इंस्ट्रक्टर है जो इन्हें योगा सी--

प्राइस भी हमें नजर आ सकती हैं।

लिखा है शायद इस मॉल का--

जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं।